देखिये ये जो हमकों ये गैलरी दिख रही है जिसमें ये डेकोरेशन है काफी अच्छा है ये डेकोरेशन किया है यहाँ पे जो फ्लोवर पोट्स वगैरह रखे हुए है।

ये गार्डन है गार्डन के बीच ये देखिए नीचे ये घांस वगैरह है और ये जो टेवल रखी है एक चेयर रखी है काफ़ी लाइटिंग वगैरह बहुत --

जिसके लिए बन रहा हो चाहे अब रेल के लिए बन रहा हो चाहे किसी और के लिए बन रहा हो ये बस्तर मे ई हैं इस जगह पर पुल बनता हुआ नजर आ रहा है बहोत ही बड़ा पुल बनता हुआ नजर आ रहा हैं

इन मि इन मिटर्स के द्वारा जगह जगह पर बिजली जाती होगी ये पुरा पॉवर हाउस सा हैं बस्तर का जो बिजली सप्लाई करता हैं।

काफी बहुत बड़ी है और काफी पुराने समय की है और बहुत बड़ी --

पानी अंदर की ओर जा रहा है खेत है खाली खेत में लगाए है।